लड़कियां अपना योगा कर रही है और एक इन्सट्रकटर हैं जो खड़े है वो सबको योगा करना बता रहे हैं ।

ये एक क्‍लास रूम है जहां पे अभी लैब --

और बोहत प्‍यारा सीन है | पेड़ वगेरा सब यहां पे लगे हुए हैं। धूप काफी आई हुई है ।

पेड़ भी लगे हुए हैं। लाल पीले क्रीम कलर का टेंट है और फ्लॉवर से भी डेकोरेशन हो --

ये एक टेंपल की फोटो है जहां पे लोग पूजा करने के लिए आयें हुए हैं। एक साड़ी पहनी हुई है लाल रंग के --

ये सबसे आगे नीली लाल बस है टुरिस्ट की।

और एक पीछे टावर भी शो कर रहा है |

बहोत प्यारा प्रतीत लग रहा है ।

और चीजें बहोत अच्छे से --

आँड नीले रंग का शटर है और एच.पी. वाली दुकान है।

और कुछ कोई बोल रहे हैं और ये क चर्च के अंदर का दृश्य है।

बहोत अच्छी सजावट हो रखी है ।